यह एक रिसेप्शन का माहौल बना हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा मारुति सुजुकी ।

यहाँ पे लोग बहुत अच्छे बाल काटते हैं जो इनके एम्प्लाइज हैं वो अपने एरिया में ज्यादा ही फेमस है।

ए सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के अंदर पधारे हुए है।

जहां पे आजू-बाजू चलने के लिए फुटपाथ भी बनाया गया है।

यहाँ एक गाड़ी का शोरूम है जिसके अंदर एक बंदा है जिसको गाड़ी लेनी है तो वो ब्लू कलर की गाड़ी देखने के लिए आया है और उसको पसंद आई है |

कुत्ता सो रहा है और उसके बाजु में एक रेलवे ट्रैक है।